और ईशान ये पोल हैं बिजली का पोल हैं।

इसलिए टी-शर्ट पर ग्यारह लिखा हुआ है चौदह लिखा हुआ नौ सात तेरह पाँच दस और रेड कलर का हाफ पैंट भी है।

मेडिकल दुकान है इनके अंदर दवा सब तरह-तरह की कंपनी का भी है।

और कुछ बाहर हैं और लोग अंदर भी हैं टेन्ट के अंदर हैं। चारो बगल से बांस से घेरा भी हुआ है टेन्ट का।

साइड में भी फील्ड के अंदर भी घासें हैं।

एक बाइक पर बैठे हुए हैं ऊपर एक महिला है जो खड़ी है।

ईट-ईट से लगे हुए हैं।